और उ गाय बैल भी ये सब भी आती है यहाँ चरने के लिए | एक अ साइड में एक झोपड़ी भी है क्यूंकी गाँव के साइड का है तो गाँव के साइड में ये सब ज़्यादा होता है।

ये बिल्डिंग है जो अभी बन रहा है पूरा कम्पलीट नहीं हुआ है ढलाई का मशीन है जो निचे रखा हुआ है अभी सबसे ऊपर वाला फ्लोर ढलाई हो रहा है।

ये गेरेज का है हा ये गेरेज का पिक्चर है एक गाड़ी है जोकि आया हुआ है सफाई करने के लिए उसको उसका पूरा साफ करने के लिए और ये एक पाइप भी है नल में लगा हुआ।

ये एक वेडिंग हॉल का है और यहां वेडिंग हो रंग शादी का है अभी यह शायद स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए अभी यहां कोई भी नहीं है।

जिसके वजह से यहाँ ग्रीन ग्रीन काई सब भी है लगा हुआ और नीचे पानी है।